यह बोहोत वाला गुस्सेल वाला जानवर है। इससे लोग डरते भी हैं लेकिन यह बोहोत शा स्वभाव का रहता है।

यह एक बस है। इसमें बहुत सारे सवारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। यह बहुत ही सुन्दर बस है।